लाल कलर की चेयर लगी हुई है जिस पे सफेद कलर का पर्दा लगा हुआ है सेंटर टेबल है जिसमें गुलाबी कलर का कपड़ा है।

बल्ब दिख रहा है ला_और इसमें पानी की बोत्तले दिख रही है।

ये शायद एक दूकान है जिसमे बेट दिख रहा है फुटबॉल दिख रही हैबैग दिख रही है वॉलीबॉल दिख रही है जूते दिख रहा है बैटमेंटेन दिख रहा है येलो कलर की केन दिख रही है।

पुल है पानी है पानी बेहता हुआ है बड़े-बड़े फत्थर है पहाड़ी है ऊपर पूल है खुला आसमान है नीचे झाड़ है।